ये चेस्ट बढ़ाने वाली मशीन है।

क्योंकि ये वक्त की खूबसूरती का है। इसलिए इसे बोहोत खूबसूरत और बोहोत अच्छे अंदाज में सजाया गया है।

गिफ्ट बनाएगा। जिसे और जो सबसे अच्छा गिफ्ट बनाएगा उसे प्राइस मिलेगा। बच्चो ने बड़ी लगन के साथ और मेहनत से के साथ ये बच्चे एक गिफ्ट तैयार कर रहे है।